यह एक पेट्रोल पंप है यहां पेट्रोल मिलता है लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाते है यह यहां के पेट्रोल पियोर रहते हैं और अच्छे रहते हैं।

यह एक मॉल है यहां पे लडकी के कपड़े मिलते हैऔर यहां कपड़े बहुत सुन्दर है यहां के लडके आके यहां लडकी के कपडे लेके जाते है और यह कपड़े बहुत अच्छे!

यह छोले भटूरे का छोटा सा एक दुकान है यह छोले भोटा बहुत खाने में काफी अच्छे लगते है और स्वादिष्ट है यहां पे बहुत सरे लोग चोले गुल कुच्चे खाते है।